रहने का आप अ रूम देख सकते हैं और यहाँ पर यहाँ जो है अ कई लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए जो रूम मिलता --

यहाँ देखिये उमम समुंद्र है समुंद्र में पूल का हह काआआ दीवार दिया गया है।

यहाँ मछली दुकान है। यहाँ पर मछली जिसमे बना रहे है और यहाँ पर ग्राहक आकर खरीद रहे है। अलग अलग प्रकार की मछली मिल रहे है।

यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा हॉलसेलर हैं बुको का | यहाँ पर अलग-अलग टीचर का भी --